के बाजु में बहोत बड़ा खेत दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक आई सीआईसीआई बैंक --

उसके सामने हरा-भरा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

ये शगुन पैलेस जैसे होटल मैरिज पार्टी।

और कुछ लोग आते-जाते नजर आ रहे हैं।